इसमें कई प्रकार के मेनू लगे हुए हैं जो काफी संख्या में है उसके ऊपर बोतले रखी हुई है जो कांच की है।

काफी संख्या में मशीनों के ऊपर रखे हुए हैं एक तरीके से लगे हुए हैं पास ही में एक शीशा है उसके बाहर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए --

सामान जमीन में रखा हुआ है कोई मशीनें के ऊ--

नदी है जो पूल के आसपास से निकल रही है पास ही में एक--

पेड़-पौधे खड़े हुए हैं जो कफी दूर-दूर तक है।

कुर्सी पर बैठे हुए कुछ खड़े हुए है जो आपस में बात--

यह एक शॉप है जो फायर फॉक्स आहूजा ट्रेडिंग के नाम से है।

उसपर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो काफी संख्या में है।

वहीं एक पर एक कुछ कपड़ा टंगा हुआ--

इस रूम में घड़ी लगी हुई है भाई एक अं अं सोफे पर एक पेपर रखा हुआ है कोई प्स बैग रखा हुआ है।

जाली लगी हुई है जो सफेद रंग की है यह--

बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो काफी संख्या में हैं गार्डन के बीचों बीच एक लोहे का एक चक्र बना हुआ है जिसके--

आपके दोनों तरफ काफी बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं बीच में एक--

किराना स्टोर के नाम से उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। नई--

लेडीज का फोटो लगा हुआ है नीचे कुछ काले काले रंग का जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।